यहां पे कुछ तार नजर आ रहे है एवं एक दो मकान नजर आ रहे है जो की देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं।

कोई रेस्टोरेंट में दो फ्रेंड अपने शाम को बेहतरीन बनाने के लिए साथ में कुछ पल गुजार रहे हैं एवं कुछ नाश्ता कर रहे हैं।

यह कोई रेस्टोरेंट के अंदर का व्यू है यहां पर तीन--

और देखने में यह बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है।

ये एक पुस्तक दुकान का तस्वीर है।